मुझे एक होटल दिख रही है हो --

मंदिर के ऊपर कुछ बना -सा हैं ।

ब्लैक कलर से भी --

और समुन्द्र दिख रहा है इसमें पानी है और--

में खूब सजावट हैं ।

एक बोरी दिख रही है वाइट कलर की इसमें एक बड़ा -सा गजरा रखा हुआ है माला --

और पेपर दिख रहे है न्यूज़पेपर --

बॉक्स वॉक्स और ऊपर ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा हैं ।

नीचे और ग्रे कलर की रोड दिख --